इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मछली यानी की ये --

बहुत ही सूंदर है जगह है बहुत ही बढियाँ है --

साफ-सुथरा बहुत ही अच्छा सड़क है जो की पानी भी बहुत है।

गाड़ी भी पार होते हैं यहाँ पर हरियाली दिख रहा है पीछे साइड ।

सुंदर अच्छा बढ़िया है बहुत ही --

यहाँ पर लोग आ के बैठे हैं आजम में।

ऐसे लिखा हुआ हैपेंसिल से यूनिक चीज --

आदमी के पास एगो है बहुत ही अच्छा है बहुत यूनिक बहुत ही --

यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है खाने मे बहुत ही सुंदर लगता है बहुत ही बेस्ट बहुत ही बेस्ट बढ़िया है यहाँ लेकिन बहुत --

सुन्दर है फिर भी ठीक है अच्छा है यूनीक प्रकार के हैं ये।

अलग कितना लोग भी हैं मजे ले रहे हैं पर घूर रहे हैं।

लोग सफर करते हैं दूसरा दूसरा स्टेशन मे इसका लम्बा बर्थ है ।

और एक पोस्टर भी है।

इंडिया पार्किंग इंडिया का नक्शा बना हुआ हैवह है जहाँ पर --